यहां पे मिस्त्री अभी सामने नजर नहीं आ रहा है बाइक का नाम रॉयल रिवर्स है।

यहाॅं पे जो है बड़े बड़े अशोक के पेड़ लगे हुए हैं।

सोफा वगैरा रखा हुआ है जो गार्डन पे रहता है।

ये एक लोकल गार्डन ही है यहां पे जंगल सफारी जैसा भी लग रहा है।

यह एक तलाब का फोटो है जहाँ पे कुछ पूजा वैगरा चल रहा है जैसे छठ वठ जो पूजा रहता है उस टाइप से यहाँ पे --

यहां पे साड़ियां वगैरा बहोत अच्छे से जमा करके रखे गए हैं।

और प्याज के जो पत्ते हैं उन्हें फूल और उनके बीच जो है ये बन चुके हैं।